यहाँ पे देखिए कोई आदमी है और एक मछली कितनी सारी मछली है उन सब मछलियों को काट रहे हैं --

और पीछे भी मूर्ति है देखिए इतना अच्छा लाइट जल रहा है।

इतना बड़ा पहाड़ है देखिए और सामने एक दो तीन भैंसी भी है।

ये देखिए शादी का सजावट है और कितना अच्छा फूल है।

सभी अलग अलग तरह के कपड़ा पहने हुए है बहोत पंखे भी लगे हुए है। देखिए कितना अच्छा है।

खाने पीने वाला भी सामान बहुत अच्छा है देखिए कितना अच्छा लग रहा--

और देखिए पोस्टर भी कैसा कैसा लेडीज रखी हुई है और यहाँ पे देखिए बहुत लोग भी हैं।

लड्डू बहुत सारे हैं सामने एक लेडीज है वो दुकानदार है और इसमें फ्रिज में क्या-क्या है ठंडा है बहुत तरह के --

यहाँ पे एक अंकल कॉफी बेच रहे हैं और बिस्कुट भी है खाने वाला और एक आदमी देखिए कॉफी पी रहे हैं।

दो अंकल मा एक अंकल मास्क लगा के बैठे हुए हैं यहाँ पे देखिए पानी का बोतल भी है।

यहां पे कबड्डी कबड्डी खेला हो रही है शायद लड़की लोग हैं।

इतना अच्छा घर है और कितने अच्छे से सजावट किए हुआ है और इसमें कितना खर्चा हुआ होगा--

बहुत बड़ी बिल्डिंग है तभी देखिए बाजू में पेर भी है।

और उसके नीचे आदमी देखिए फोल उल भी है।

बहोत तरह के चीज यहां पे रखा हुआ सामने मिठाय भी है देखिये लड्डू भी --

देखिए इतना अच्छा पंडाल है और कति लिखा हुआ है यहाँ पे ड्रेडिंग कंपनी सफेद कलर का चेयर भी है।

पता नही ये क्या है मुझे भी नहीं मालूम एक बोर्ड भी यहां पे लगा हुआ है ये कैसा मशीन है?

क्या क्या मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है कि मैं किस किस देवताओं का नाम रखूं मैं यहां पे देखिए बहुत सारे लोग भी गए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए।

ये देखिए इनको मुंह में क्या लगी हुई है और एक मोबाइल है हाथ में।

और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उसके पीछे से फोटो है गौतम बुद्ध का --

और अंदर में बहोत सारे आदमी भी हैं जैसे कितने आदमी हैं सामने भी एक आदमी खड़ा है स्कूल --

और देखिए कितने लोग है इस मेले में बहुत लोग है देखिए बहुत तरह के सामान भी इधर बिक रहा है बहुत तरह की चीज भी है --